यहां पे तस्वीर में हमें नजर आ रहा है कि बहुत सारी हैं और--

बहुत सारे डिफरेंटस कलर के डिफरेंट कलर के कारपेट भी है और डिफरेंट के।

पर पौधे लगे हुए हैं और बीच में सेंटर में मिरर भी लगा हुआ है।

जिस पे पिंक कलर हुआ है और एक पे येलो कलर हुआ है --

यहाँ पर नज़र आ रहा है पिक्चर में एक मिरर लगा हुआ है जहाँ पर ना हमे।

और दो जो टेबल रखी है उसके ऊपर दो--

बहुत बड़ा ये कोई पहाड़ है जिसके अंदर बनी हुई है।

और काफी तो बहुत ज्यादा शोर शराबा यहां पर हो रहा है।

यहाँ पर नज़र आ रहा है पिक्चर में बैठी हुई है कुछ खड़ी हुई है और कुछ।